इसके सामने रोड पे एक व्हाइट कलर की लाइन है जो रोड पे लगी हुई है इसके सामने एक बोहोत बड़ा ग्रीन पेड़ --

ये एक मेंस गारमेंट की शॉप है जहाँ पे मेंस वियर कपड़े सेल् किये जाते हैं।

यहाँ पे एक येलो कलर की शेरवानी हैं और उसके पीछे एक नेवी ब्लू कलर की जैकेट और ब्लू कलर की शर्ट है उसके पीछे एक पिंक कलर की शेरवानी है जो की डमी पेहने हुई हैं।

ये एक खाने की थाली है जिसमें बहोत से प्रकार के भोजन रखे हुए हैं।

और पेड़ बहुत सारे उग रहे हैं जिसके कलर ग्रीन है साइड में एक बिल्डिंग बनी हुई है और पीछे इसकी जालियां लगी हुई है।